यहाँ एक दिखाई दे रहा है के आसपास कुछ झाड़ लगे दिखाई दे रहें हैं और एक हाइवे दिखाई दे रहा है हाइवे के आगे बहुत घना झा जंगल दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक घर बना दिखाई दे रहा है।

वहाँ पे एक दादा दिखाई दे रहे है दादा ने व्हाइट कपड़े पहने दिखाई दे रहे है।